यहाँ पे देख सकते है जमीन वगेरा है और यहाँ पे बिरयानी से ये लोग मुर्गा खा रहे है काफी सारे आदमी हैं और--

और ये तालाब पे है और यहाँ पे काफी बड़ा-बड़ा सहारुक है और ये सारूक कैंसर का दवाई होता है इसलिए इस को ले जाके--

यहाँ काफी सारे आदमी लोग आते है नमाज पढ़ने के लिए कालीन बिची हुई है कारपेट बिछाया हुआ है और लाइट वगैरा बहोत--